यहाँ पर पे ढलाई का काम चल रहा है जिसमें --

उस साइड्स में लिखा हुआ है अभि गोरमोटस और बहुत सारे --

जो बहुत सारा पेड़ भी है लम्बा-लम्बा --

बक्से से कुछ निकाल के वो साइडस में एक भगत सिंह का --

पोस्टर टंगा हुआ है उसके साइड में एक स्विच है।

देख के प्रतीत हो रहा है की यह एक मैंरिज हॉल है।

जिसके बीच में कोई एक स्टैचू बना हुआ है जो इक बुक लेक के खड़ा है।

और नारियल का पेड़ है और सुंदर-सुंदर पेड़ हैं।

और दो बच्चियां है जो नृत्य कर रहे हैं और एक लाइट जल रहा है नीचे में।